काले कलर के नीचे काफी सारे मट्टी दिख रही है जिसमे तरफ पानी है जिसमें सामने मगरमच्छ आते हुए दिख रहा है।

काफी सारे पेड़ लगे हुए दिखाई दे रहे हैं मकान दिख रहा है जो की सफेद कलर का है उसमे टी वी लगी हुई है।

हरे कलर का है पीछे की तरफ काफी सारे मैदान ही मैदान है काफी सारे पेड़ लगे हुए दिख रहे है पीछे की तरफ और जानवर खड़े हुए दिख रहे है हिरण।

और नीचे एक आदमी बैठा हुआ दिख रहा है जो सफेद शर्ट में है उसके हाथ में कुछ हार दिख रहा है सामने की तरफ एक बस है जोकि पीली कलर की है उसपे काफी सारी खिड़कियां दिख रही है।

बड़ा सारा तालाब दिख रहा है इसमे एक जानवर दिख रहा है जो काफी बड़ा सा है।

बहुत सारी बिल्डिंग दिख रही है जिसमे काफी सारी खिड़किया दिख रही है कुछ छोटी है कुछ बड़ी है सामने जो कि सफ़ेद रंग की है ये बिल्डिंग सफ़ेद और कत्थे कलर की दिख रही है ऊपर की तरफ आसमान दिख रहा है जो कि सफ़ेद रंग का है ये काफी बड़ी सारी बिल्डिंग है जो कि चार मजिला दिख रही है।